टेबल के ऊपर एक बॉटल रखी हुई है एक बैग रखा हुआ है ब्लैक कलर का ऊपर फैंस लगे हुए है लाइट्स लगी हुई हैं।

यह एक वाटर पार्क है जहाँ पे बहोत सारे झूले है एक फिसलन पट्टी है एक बहोत सारे लोग पानी मे खेल रहे है पेड़ है।

एक केक की दुकान है जहाँ पे कांच के काउंटर के अंदर बहुत सारे कैक्स रखे हुए है ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है फैन्स लगे हुए है एक स्विच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।